पत्थर की चट्टानें दिखाई दे रही है व नद पत्थरो के बीच मे थोड़ा-थोड़ा नदी का पानी जाता हुआ काफी सुन्दर दिखाय दे रहा है दूर देखने पर हमे एक पहाड़ टाइप का दिखाई रहा है जहाँ पे हमे पेड़ पौधे देख--

उनका रंग सफ़ेद व कत्थई है ज्यादातर सफ़ेद बकरियाँ है वहाँ पे एक बड़ी सी ट्रे लगी है जिनमें उनका खाना रखा हुआ है वह सब उमसे मुंह डाल के कहना का रही है।

वह एक सड़क गुजर रही है जिसमें से हमें एक व्यक्ति है जो सफेद रंग की शर्ट पहना है और उसके साथ एक चोटी सी बच्ची है जो फ्राक पहनी है वह उसके सामने से गुजरते हुए नजर आ रहे है।